जिसमे ब्लैक अंगूर ग्रीन अंगूर सेव संतरे केला और नाशपाती भी रखे हुए हैं।

और ऊपर में करकट से छाया गया है।

दृश्य में बहुत सारे ट्रॉली दिख रहे हैं जिनका कलर हरा पिंक और गुलाबी है।

और एक नीचे फोटो रखा हुआ है।

और ऊपर में छोटे छोटे मोंगिया के पोस्टर भी लगे हुए हैं।

दृश्य में दो पेड़ दिख रहे हैं।

जिसके बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है।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

जिनका कलर व्हाइट एवं रेड है।

दृश्य में एक काउंटर दिख रहा है जिसके ऊपर एक लैपटॉप रखे हुए हैं।

और बगल में एक वाइट कलर का टेबल है और बोर्ड भी लगा हुआ है।

और टेबल पर दो चीज़ रखे हुए हैं।

जिसका कलर नीला है और दो लकड़ी के चेयर भी रखे हुए हैं।

और बगल में एक मेगिया का पोस्टर भी लगा हुआ है जिसका कलर भी येलो है और बगल में एक बाइक लगे हुई है।

और बगल में कंप्यूटर भी रखे हुए हैं और पर घोड़े के चित्र भी बनाए हुए हैं।

बीच में बहुत सारे कार्टून दीख रहे हैं जिनका कलर ब्राउन है।

और बगल में एक भवन जैसा दिख रहा है।

और ऊपर में एक तस्वीर लगे हुए हैं।

और पर्दा लगा हुआ है और दीवार का कलर व्हाइट है।

और भिंडी और मटर और प्याज भी रखे हुए हैं।